एक बी_एम_डब्लू है और दूसरी का पता नही--

यहां सी_सी_टी_वी कैमरे लगे हुए हैं देखने में लगता है कि यह कोई गोडाउन वगैरा है।

वेल्ड एंड क्राफ्ट के नाम से जाना जा रहा है।

दुकान का सटर खुला हुआ है।

जहां बहोत सारे लोग पूजा कर रहे हैं।

जिसमें हमें स्विफ्ट कार दिख रही है।

जहां पर युवा आकर प्रैक्टिस करते हैं और अपनी मसल्स को गेन करते हैं।

बहुत सारे फूल भी इसमें दिखाई दे रहे हैं।

उन सब के बीच प्रतियोगिता हो रही है।

यह बच्चे आनंद ले रहे हैं।

मूर्ति के गले में माला पहेना रखी है।

इसके बीच में घंटी भी लटकी हुई है।

जब लोग मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो इन सब को ले जाते हैं और वहां पे जो मूर्तियां रखी होती हैं।

जनरली देखे तो ये सभी रसोई का सामान रखा हुआ है जो की कांच का है।

यहां पर दो पुतले भी रखे हुए हैं जिनको ड्रेस पहना कर खड़े कर रखा है।

और टीचर उसे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं।

चॉकलेट के डब्बे रखे हुए हैं।

और वो अलग वस्तु अलग प्रोडक्ट से बनी हुई है यहां पर देखने में बहुत सारे लगे हुए हैं।

इसके आसपास बहुत सारी खाई है जिसके पास जाने में बहुत बहुत ज्यादा खतरा है।

जहां पर बहुत सारे ट्रैवलर लोग आते हैं और रेस्ट करते हैं और जहां पर भो--

भोजन करते हैं अलग प्रकार की डिश के साथ खाना खाते है और अपना पेट भरते है।

खेल दिखा रहे हैं अपनी प्रक्रिया को लोगों के सामने दिखा रहे हैं।

इसमें कुछ लड़कियां भी है जो वहां कर वहां पर आकर स्थान कर रहे हैं।

यह एक दुकान है यहां पर अलग अलग तरह का सामान मिलता है।

यहां पर अलग अलग परकार के--

और अच्छे अच्छे कलर में मिलती हैं।